और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेट्रोल रखते हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे भराने के लिए बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पे और अभी यहाँ पे एक कार आया है और मो --